दुकान टिन की है बल्ब दिख रहा है।

कमरे में सोफा रखा हुआ हैं।

छोटी सी पत्थर की गुफा दिख रही है।

दीवाल में पेन्ट हैं ।

पीछे उसके एक दुकान है दुकान में बोर्ड लगा हुआ हैं ।

और स्कूल दिख रही है स्कूल में पेन्ट है गेट लगा हुआ है स्कूल में पिलर है स्कूल में --

और ज़ाली लगी हुई है लोहै की बोर्ड लगे हुए है दो --

काँच लगा है नीचे नीचे जमीन में फर्ज है और गेट भी काँच का हैं ।

और चबूतरे दिख रहे है नीला आसमान है छोटे-छोटे पौधे दिख रहे --

पिलर में पेन्ट है और सफ़ेद कलर का पेन्ट है नीम का नीम का पेड़ दिख रहा है नीम की पत्ती दिख रही है अंदर घर बना हुआ है।

बाइक दिख रही है एक --

एक शोरूम की तस्वीर है शोरूम का सेटअप अच्छा दिख रहा है कुर्सियाँ लगी हुई हैं ।

एक लड़की दिख रही है जो साड़ी पेहनी हुई है।

दुल्हा और दुल्हन एक साथ बैठे हैं ।

घर में छत डल रही है लोहे की रॉड छत के ऊपर पड़ी हुई हैं ।

हरी -भरी घासे है छोटे- छोटे पौधें है बड़े- बड़े पेड़ दिख रहे है।

और पानी बेह रहा है नदी का --

सोफा रखा हुआ है जिसमे सफ़ेद कलर का कवर चढ़ा हुआ है।

और सीर में प पगड़ी बांधे हुए है बगल में भी बस एक दिख रही हैं ।

चारो और पेड़ दिख रहे हैं हरियाली छाई हुई हैं।

छोटा सा एक तालाब है तालाब में पानी भरा हुआ है।

बाइक बुलट है और अ बाइक का हैलमेट दिख रहा है काले कलर का--

एक ब्लीडिंग बनी हुई है ब्लीडिंग के उपर रेड कलर में प्रसासनिक भवन लिखा हुआ है।

पत्त्थर काले दिख रहे हैं ।

श्री राम जनरल स्टोर्स लिखा हुआ हैं ।

किराने की दुकान है दुकान के अंदर सेटप अच्छा दिख रहा है अलमारी है।

पहाड़ के ऊपर से फोटो ली गई है कुछ आदमी का परछाई आ रहा हैं ।